और देखिए बाइक का शोरूम है यहां पे बाइक लेने हम लोग जाते हैं यह दो पहिया वाहन का शोरूम हैं यहां पे --

अच्छा होटल हो सकता है ये यहां पे बड़े बड़े कमरे ठहरने के लिए आपको मिल जाएंगे।

यह एक मोबाइल की दुकान है जहां पे देखिए मोबाइल के नए-नए मॉडल्स के डब्बे रखे हुए हैं इयर फोन के डब्बे रखे हुए हैं एक ग्राहक --

बाहर एक विक्रेता जो है दोनो नजर आ रहा है इस में मोबाइल की दुकान है ये--

देखिए कि यह एक मैदान है जिसमें कि घुड़सवार घोड़े पर सवार होके घुड़सवारी कर रहे हैं बड़ा सा मैदान है और एक वृक्ष है।

यह कार पार्किंग आप देख रहे हैं कार की पार्किंग है बाइक की पार्किंग है वृक्ष लगे हैं।

ऐसा हर जगह होटल किनारे स्टेशन किनारे हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि इस तरह का आपको पार्किंग की व्यवस्था बनी रहे।

ये एक क्रिकेट का मैदान का दृश्य है जिसमें देखिए कुछ खिलाड़ी अपना नियमित अभ्यास कर रहे हैं कोई बॉल फेंक रहा है कोई बैंट से उसको मार रहा है।

इसमें नदी किनारे वो अपना घूम रहे हैं इधर लगता है कि मछली वगैरह के लिए निकले है ये लोग नदि मे अपना नाव को चला रहा है --

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यह कार्यालय प्रतीत होता है मुख्य द्वार है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैनर लगा हुआ है।

रिलायंस का मॉल है देखिए ट्रेंड्स का भी बोर्ड लगा है डिजिटल का भी बोर्ड लगा है यहां पे--

जैसा अपार्टमेंट वगैरह में किया जाता है ताकि बच्चे सही ढंग से खेल सकें इसे छोटे बच्चों के लिए बनाया--

अलग अलग मंडप जैसे कुछ बना हुआ भी है बहोत सारे यहां पे ग्राहक खड़े है जो होटल में चेकिंग करते समय आपको नजर आते है तो कुछ लोग बैठे हुए--

हरी हरी घास नजर आ रही है मैदान पर क्रिकेट के मैदान में हम लोग ऐसा दे--

कार्यालय का दृश्या नजर आ रहा है लाल रंग का बिल्डिंग है झंडा लगा हुआ लग रहा है कोई सरकारी कार्यालय है यह हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है।

सड़क किनारे की दुकान है ये देखिए जो सड़क किनारे हर जगह ऐसी दुकानें होती हैं डस्टबिन का डब्बा भी रखा है यहां पे अगर कोई--